साथ ही एक खिलौना गाड़ी रखी हुई है।

स्विफ्ट कार को देख रहे हैं।

जिस पर लाल रंग के बोर्ड से शिफ्ट लिखा दिखाई दे रहा है।

साथ ही लोहे की विशाल पत्ती भी बनी है।

बोहोत सुंदर लग रहा है साथ ही कुछ बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

चादर बिछी हुई है सामने काले रंग का एक सोफा है।

मनीष मार्बल का बोर्ड देख रहे हैं।

सारी मार्बल्स रखी हुई है।

सफेद रंग का एक टेबल है और गहरे नीले रंग के कुछ सोफे भी रखे हैं।

कांच के डिस्प्ले में बहोत से केक नजर आ रहे हैं।

यहां पर हम सामने कुछ गिफ्टस देख रहे हैं।

सामने कुछ स्टील की रैलिंग से घिराव दिखाई दे रहा है।

जिस पर लोहे के कुछ चेयर बने हुए है।

जिस पर कांच का गेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

बहोत से लोग बाहर खड़े नजर आ रहे है।

साथ ही बाहर कुछ गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।